तो इस समय जब मुझे जहां तक दिख रहा है कि यहां पर एक एयरटेल फोर जी का एक दुकान है।

सामने एक बाइक रखी हुई है।

काफी खूबसूरत बनाया गया इस जगह को भी और साइड में एक पेड़ भी लगे हुए है।

यहां एक पिज्जा शॉप है और एक अंकल का पेंटिंग बनाया गया है पिज्जा के जैसा जो कि ओ शेफ हैं शायद से पिज्जा बना रहे हैं।

साइड में एक घड़ा है।

काफी सारी चीजे रखी हुई है और सामने एक चेयर रखा हुआ है।

यहां पे ये अंकल ब्लू शर्ट पहने गाना गा रहे हैं और साइड में एक एल्लो शर्ट पहने वो पियोनो पियानो बजा रहे--

साइड में एक टेबल रखी हुई है जिसके ऊपर रुमाल रखा हुआ है जिसमें भी प्लस का ही निशान है।

एक अंकल ने ब्लैक जैकेट पहन रखा है वो लोग वो भी कुछ लिख रहे हैं।

यहां पे बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है समझ नहीं आ रहा है।

एक दुकान है और एक आदमी आए हैं इनको खरीदने के लिए और काफी अच्छी दुकान है।

कोई मुझे जहां तक समझ आ रहा है कि यहां टमाटर और मटर है जिसे कोई आदमी बचने के लिए ले जा रहा है ठेले में।

ये एक काफी भीड़भाड़ एरिया लग रहा है मतलब बाजारी एरिया है ये एक।

गेट भी खुला हुआ है तो कोई न कोई अंदर होगा ही और बिल्डिंग में भी दरवाजे खुले हुए हैं।

अंदर एक वाइट कलर की कार है।

प्याज मटर टमाटर और झोलो में भी काफी सारी सामान रखें हुए हैं।

तो यहां पे अ ये जंगल एरिया में कुछ लोग कैंप लगा कर बैठे हुए हैं।

साइड में झंडे गड़े हुए है अ बहोत सारे कलर के और कुछ लोग भी नजर आ रहे है यहां पे--

साइड में दाने रखे हुए है और उस बॉल में जैसे कुछ पानी रखा हुआ है।

यहाँ पर एक दुकान है और काफी सारी चिप्स की पैकेट रखी हुई हैं।

यहां पे बॉक्स में काफी सारी टॉफियां रखी हुई हैं और नीचे कोलगेट वगैरह साबुन वगैरह रखा हुआ है।

साइड में एक पाइप लगा हुआ है।

यहां पे एक बंदा है जो जिम में है और अपना बॉडी शोऑफ़ कर रहा है।

और ये बालकनी से लिया हुआ फोटो है और सामने नदी दिख रही है जहां पर कुछ लोग नहा रहे हैं या डूब रहे हैं पता नहीं।

और पीछे भी शादी का मंडप अच्छे से सजाया गया है।

और यहां अभी अभी दुकान खोली गई है क्योंकि कोई कस्टमर तो दिख नहीं रहा है इसलिए लग रहा है कि अभी अभी दुकान खुली है।

अलीपुर द्वार मेन रोड और यहाँ पे काफी सारे सामान दिख रहे हैं और नीचे लोग तो नजर नहीं आ रहे हैं।

ज्वेलरी भी बिक रही है।

कुछ बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं जो कुछ पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं।

व स्कूल जैसा तो लग नहीं रहा है कोई घर ही है जिसे ब्लू और वाइट कलर से पेंट किया गया है।